यहाँ पे इलाहाबा इलाहबाद अ ए.टी.एम. बैंक का ए.टी.एम. दिखाई दे रहा है।

कुछ सामान डब्‍बे में रखे हुए हैं कुछ ऊपर टंगे हुए हैं कोको कोला का जो बॉटल ए रखने का रहता है वो दिख रहा है।

सामने में कुछ जगह छोड़ी हुई है बगल में एक एक पेड़ लगा हुआ है जो के ईंट के चारो तरफ से घेरा हुआ है।

सामने में बहुत सारे बाइकें लगी हुई है अ पीछे अ एक पेड़ दिख रहा है और कुछ लोग यहां पे खड़े --

यहाँ पे एच.डी.एफ.सी. बैंक का ए.टी.एम. दिखाई दे रहा है जो कि गेट के पास तीन लाइटे जल रही है और सामने आ ए.टी.एम. है।